सामने बहुत पेड़ पौधे दिख रहे है जो की हरे भरे है उनके पीछे कुछ घर हैं घरों में सफेद कलर का पेंट हुआ है।

सामने दो ए.सी. के डब्बे रखे हुए हैं जो की सफेद कलर के हैं घर के सामने गेट बना हुआ है गेट के सामने एक कार खड़ी हुई है।

एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक पौधा है जो की बहुत छोटा है और हरा भरा है बगल में खम्भा लगा हुआ है खम्बे के ऊपर बहुत सारी तार लगी हुई है।

जो की संतरे रंग का और काले रंग का है ऊपर एक लाइट लगा हुआ है जो की जल रहा है जो की सफेद कलर का जल रहा है।

सामने बहुत सारी हरी-भरी घास है और एक पेड़ है जो की बहुत बड़ा है उसके बहुत सारे पत्ते दिख रहे है जो की सभी पत्ते हरे-भरे है।